बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है।

यह एक लकड़ियों का फैक्ट्री प्रतीत हो रहा है।

यह एक मच्छी मार्केट है यहां एक

यहां हर प्रकार के कपड़ों की बिक्री की जाती है।

यहां कुछ लोग भी आए हुए हैं भ्रमण हेतु।

थे बैठक भी बने है जहां पे--

यह एक आफिस रुम प्रतीत हो रहा है।